खिड़की के बाहर पेड़ नज़र आ रहा है।

यह स्टोर यमुना पुल के पास दौड़ा देवी रोड हमरीपुर में स्थित --

बहोत सारी छोटी-छोटी मू --